ये दृश्य एक होटल का है।

कुछ टेबल लगाए गए हैं कुछ इंसान चेयर पर बैठे हुए हैं।

एक पीले कलर का इंसान जोकि खड़ा है।

जहां पर एक कार को बनाया जा रहा है।

जहां पर हल्दी लिखा गया है। जिसके सामने पीले फूलों से गोल घेरे बना कर सजाया गया है।

बहुत लाइटें लगाया गया है।

यह दृश्य एक होटल का है।

ये दृश्य एक झरना का है।

छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैंएक रेड कलर का बोर्ड है।

जिसपे ए_एस कॉलेज देवघर लिखा गया है।

एक महिलाएं है उधर दिख रही हैं । जहाँ पे दीवालों में कुछ पेंट हुआ है।

पंडाल के अंदर बहुत सारे बलून जिसे बान बांस में बान कर सजाया गया है।

बहुत ही बड़ा सा गुंबज है बहुत ही झाड़ियां भी है।

जिसके सामने एक बड़ा सा गेट है जहां पे कुछ फूलों के द्वारा सजाया गया है।

दुकान को वाइट कलर से बनाया गया है।

दुकान में लाइट लगाएं गए हैं।

एक टी_वी है जिसपे जूते का चित्र है।

यहाँ पर किड्स एंड सैंडल्स लिखा गया है।

जहां पर बहुत सारे पानी में नाव है।

यहां पर बहुत ही बाइक रखा गया है और बहुत सारे इंसान आए हुए हैं।

आज बहुत ही नीला है बादल थोड़े थोड़े हैं।

कुछ महिलाएं के फेस दिख रहे हैं कुछ के ढके हुए हैं।

यह दृश्य एक होटल का है।

एक जैकेट पहने हुए लड़का खड़ा हैजिसके सामने दो गमले हैं जिसपे पौधे लगाया गया है।

ये दृश्य रोड किनारे एक पहाड़ की हैं जहां पे एक ऊंचा पहाड़ है।

ये दृश्य एक झील की है।

जहां पर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं व्हाइट कलर का।

यह दृश्य एक डिस्को का है।

जहां पर बहुत सारी महिलाएं डांस कर रही हैं।

होटल के उपर जय दुर्गा मेमोरियल हॉस्पिटल लिखा गया है।